यहां पे चित्रकला बना रहे हैं व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का शर्ट पहन के वहां पर व्हाइट कलर का शर्ट पहन के यहां पर मैडम वो है व्हाइट कलर का फ्रॉक पहन के।

यहाँ पे धान गेंहू धुनाई रहा है यहाँ पे एगो पीला कलर का है बोरा उमें गेंहू रखा हुआ है यहाँ पर वाइट कलर का ओ में गेंहू रखा है।